यहां पर कुछ लाइटें भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां में एक थोड़ा घास भी नजर आ रहा है।

यहां पर एक आदमी का हाथ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक गेट भी नजर आ रहा है।

यहां पर कुछ लाइटे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में घर दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर मे पानी दिखाई दे रहा है।

सामने एक रेड कलर का प्लास्टिक भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक वेइंग मशीन भी दिखाई दे रहा है।

घर के आगे कुछ मटके भी टंगे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक फूलों का मार्केट दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारे हैमर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक ब्लू कलर का सीजर भी नजर आ रहा है।

सामने छोटे घर भी दिखाई दे रहे है।

इस पिक्चर में बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक लाइट भी दिखाई दे रहा है।

यहां में दो फैन भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर पानी भी नजर आ रहा है।

वहाँ में कुछ चेयर्स भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर पानी भी नजर आ रहा है।

सामने एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

दूर में पहाड़ भी दिखाई दे रहा।